यहाँ पे ग्लास पे ग्लास चढ़ा हुआ है।

यह एक क्लास रूम जैसा प्रतीत हो रहा है जिसमे बेंच और डेस्क लगा हुआ है एक पानी का बोतल भी रखा हुआ है इसमें बच्चे आके पढाई करते है।

रेल्वे स्टेशन के बाहर बहुत सारी गाड़िया लगी हुए है। कुछ लोग एन.एच. पे --